वहीं काउंटर पर और कबाड़ मे कुछ तेल और खाने पीने के सामान भी रखे नजर आ रहे--

इस पूरे गार्डन में एक रेस्टोरेंट बना है जहां पर खाना खाते हैं।

हमें यहां फोन पे के स्पिन अ अ स्कैनर भी दिखाई पड़ रहे हैं जिस पर पैसे डालते हैं।

घर के आगे एक टीना लगा हुआ है जहाँ कपड़े सूख रहे हैं और कुछ टेबल पे रखे बर्तन भी दिखाई पड़ रहे हैं।

यहां पर मैप का भी पोस्टर लगाया गया है और नीचे आर_सी_सी के में अह पत्थर भी लगाए गए हैं।

कुछ बगुले हैं तो कुछ काले कलर के बगुले नजर आ रहे हैं।

तस्वीर में हमें ढेर सारे बच्चे एक झूले पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

यह झूला काफी बड़ा है और लाल और चॉकलेटी कलर में भी दिखाई पड़ रहा है।

यहां पर काफी जीन्स और टी शर्ट रखे हुए हैं और कुछ बॉक्स में भी कपड़े लगाए गये है।

इसके ठीक पीछे हमें बहोत ही बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है जो काफी हरा भरा है।

इस तस्वीर में हमें एक रेस्टोरेंट का शॉप नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक शॉप दिखाई पड़ रहा है जहां पर ढेर सारे एसेसरीज मिलते है।

अंदर कट कपाट पर काफी सामानें रखे हुए हैं जो कि कुछ फोटोस और पोस्टर में है।

इस तस्वीर में हमें होटल साक्षी एवं फैमिली रेस्टोरेंट नामक एक रेस्टोरेंट और होटल दिखाई दे रहा है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है। नीचे सफेद बोरी में रखा और ढेर सारा सामान भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक बहुत बडा डैम नजर आ रहा है जो कि पानीयों के बीच में बना हुआ है।

ह बैरीकेडिंग नीले और थोड़े हल्के काले कलर में है और नीचे पत्थर सफेद कलर में है और यह पानी नीले कलर का है।

प्लाटिंग के चारों तरफ बाउंड्री घिरे हुए हैं जो की पत्थर का सफेद कलर में है।

इस तस्वीर में हमें नौ सौ निन्यानबे रेस्टोरेंट प्योर वेजीटेरियन नामक एक होटल दिखाई पड़ रहा है।

बूढ़े बाबा सरकार का पोस्टर भी नजर आ रहा है और खंभे भी लगे हुए हैं पीछे।